बोहोत से लोग क्लियरली दिखाई भी नहीं रहे हैं।

यह एक थर्ड फ्लोर का बिल्डिंग हैं।

आने के बाद रिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगा।

और कुछ पुरुष और महिला भी दिख रहे हैं।

इस एरिया में बोहोत ही शांति है क्योंकि ये --

एरिया में रोड का यह हिस्सा है।

इस लाइब्रेरी में बहोत सारे बुक रखी हुए हैं।

बैंक का नाम है यूको बैंक । भारत सरकार का --

बनाया गया है। इन फैक्टरीज में अं --

रेस्टोरेंट के रेस्टोरेंट के ऊपर साइड यानी की छत --

इस इमेज में जो प्लेस दिख रहा है। इस इमेज में बहुत सारे --

यहाँ पे सभी लोग योग अभ्यास करने के लिए इकट्ठे हुए हैं।

इधर में एक हाथी और एक आदमी दिख रहा है। यह आदमी भ्रमड़ करने के लिए आया हुआ है और हाथी की सूंड पर बैठा हुआ है।

एक स्कूटी भी दिख रही है और यहां पे जो अं जो प्लेस है वहां पे बोहोत ही अंधेरा है।